बहुत सारे पीछे जीम का मशीन दिख रहा हाथ ट्रॉउज़र में है फोटो की सेल्फी ले रहा है मिरर सेल्फी

समुन्दर दिख रहे हैं अंकल फोटो ले रहे हैं अपना व्हाइट कलर का टीशर्ट ब्लैक पैंट बहुत बड़ा ईमारत दिख रहा है।

सर्कस सिखाये जाते हर कुछ होते हैं कुछ परफॉरमेंस चल रहा हैं।

पूजा का है यहां वहाँ मेला लगा हुआ है बहुत सारे कोई बाइक से और ये बहुत--

यहा पे सब फुटपाथ पे खड़े हैं ऑटो का वेट करने के लिए।

बजाज हीरो होडा ये सारे मोटर साइकिल का यहा पे स्कूटी के पार्ट्स रेपिररिंग --

पेड़ हुआ है। पता हुआ है। सामने इ घास दिख रहा है।

बहोत बड़ा यूनिवर्सिटी लग रहा है ये।

पीछे क्लास हैं बहुत सारा विंडो हैं छत पर बिल्डिंगे हैं।

बहुत सारे दरवाज दिख रहा है बहुत ही ज्यादा पिलर हैं पुरा एटा का है जमीन पर पूरा मिट्टी मिट्टी हो रहा है।

शॉप पे बहुत सारे बुक दिख रहा है एक सीढ़ी दिख रहा है।